यहाँ पर गुपचुप चाट आदि मिलता है।

तरह-तरह के सब्जी मिलते है।

तड़ाके की ठंड लग रही हैं।

एख बड़ा -सा समुद्र हैं।

बहुत ही सुन्दर दृश्य है।